हरे सफेद गुलाबी बैंगनी आसमानी--

यह प्लॉट नंबर एक सौ इकसठ ओखला में स्थित है ।

इसमें मिट्टी के गमलों में पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं ।

इस तस्वीर में हमें एक ढाबा और रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है ।

यह तस्वीर हमें किसी भोजनालय या जलपान ग्रह की दिखाई दे रही है ।

जिनके सामने पानी की कुछ बोतलें भरी हुई रखी हैं ।

उसके पास में एक स्टेपलर मशीन रखी है ।

सामने एक कैलेंडर लटका हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहां पर चांदी की गाय और बछड़ा भी रखा हुआ है ।

दूल्हे के दोनों तरफ दो बच्चे बैठे हुए हैं ।

इस दृश्य में हमें एक कमरा नजर आ रहा है।

उसके बाहर एक पार्किंग क्लोजड का बोर्ड भी नजर आ रहा है ।